बिजली के तार भी दिखाई दे रही है।

और गत्ते के डिब्बे दिखाई दे रहे हैं।

यह एक शोरूम दिखाई दे रहा है।

बहुत सारे छोटे पौधे दिखाई दे रहे हैं गमले दिखाई दे रहे हैं गमलों में छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं।

और यहां पर स्कूटर भी दिखाई दे रहा है।

आसमान दिखाई दे रहा है आसमान में बादल दिख रहे हैं।

यहां पर एक काउंटर दिखाई दे रहा हैं चेयर दिखाई दे रही हैं दीवार दिखाई दे रही है दीवार में तस्वीरे लगी हुईं हैं।

फर्श भी दिखाई दे रहा है।